यहां पर बहोत सारे कुर्सियां भी लगी हुईं हैं जो बहोत ही--

जहां पर पीछे एक बहुत--

तो जहां पर बहोत ही--

पर एक नदी भी है जहां पर--

सड़क है जहां पर पांच छे आदमी बैठे--

और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं यह कपड़े देखने--

में बहुत सारे लोग खड़े --

मंदिर है जिस में भगवान की पूजा की --

जहां पर बहुत सारे लो--